रखी हुई है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। लीची है। बादाम पिस्ता है। काजू कतली है। केक बहुत स्वादिष्ट है। आ हा।

यह एक मजार है। गुंबद दिखाई दे रहा है। लगता है यह खुशरोबाग है।

हम यहां अपने पैन्ट शर्ट मनपसंद के सिलवाने के लिए जाते हैं।

यहां एक लड़की झूला झूल रही है। झूला घुमाऊ दार है । पीछे सीढ़ियां लगी हुई हैं।

यहां किसी यहां भीड़ है शायद किसी चीज़ का उद्घाटन हुआ है।

एक फोटो है मकान है भीड़ लगी --

रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति भी कुत्तों के साथ खड़ा होकर के इंतजार कर रहा है। बोलिये श्रीपति राधा रानी की जय।

ये बंदा अपनी झक मारया है। बात भी नहीं करने दे रया है हमको तुमसे।

दिल तुम्ही ने दिया है तुम्ही को देंगे।

लड़का स्टेप कर रहा है। हा --

संविधान का निर्माण करने में इनको बहुत साल लग --